सामने एक शादी का हॉल टाइप का दिखाई दे रहा है जो की पीले फूलो से सजाया गया नज़र आ रहा है।

--बहुत सारे पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे है और सामने की और दरी बीछी हुई दिखाई दे रही है लाल रंग की दरी और--

एक छत पर एक मूर्ति बनी हुई है इसपे घोड़े की मूर्ति है उसपे ऊपर एक सैनिक बैठा हुआ है पेड़ लगे हुए है और खुला मेदान है।

यह बाल कटवा रहा है यह सामने की ओर देख रहा है स्टाइलिश बाल कटिंग करवाता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर आसमान में छत ऊपर का छत पे लाइट लगी--

--तीन सेट का बना हुआ दिखाई दे रहा है एक बूढ़ा आदमी जाते हुए नज़र आ रहा है जिसनें लूंगी पहन रखी है ऊपर की और ऊपर इसने पजामा पहन रखा है।

सामने बहोत सारी औरतें खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो कि सामने की ओर देख रही है ऊपर की बिल्डिंग पीली दिखाई दे रही है साथ ही औरतें सामने की ओर देखती हुई नज़र आ रही हैं।

जिसमें से एक ने सफ़ेद की साड़ी पेहन रखी है दो ने एक ने बहोत सारी ने सेम साड़ी पेहन रखी हैं।

हमने बहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहोत सारी सर्किटे लगी हुई दिखाई दे रही है।